ये एक जगह का चित्र है जिसमें पानी गिरता हुआ दिख रहा है।

ये एक जगह का क्षेत्र है।

ये एक जगह का चित्र है जिसमे हरे रंग के पेड़ लगे हुए है एक मकान बना हुआ है।

पानी भरा हुआ है।